फिर से सीमेंट वगेरा दे दिया जाए इसमे --

दर्शाया गया है इसमें डैम इसको बोलते है।

देखते हैं कितना अच्छा डेम्स है पानी --

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कृपया यहां पर गन्दगी ना फैलाएं ओ भी लिखा हुआ है।

राइज जंगल का बहुत ही सुन्दर --

यह एक मुस्लिम का घर के फोटो को --

गया है यहाँ पर बोहत सारे प्रो --

और भी बहुत सारे जीव-जंतु से --